घोड़ों की कुछ बच्चे सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर हमें बहोत सारे केकस ब्रेड्स पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

आसपास कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य मे हमे एक खाली मैदान नजर आ रहा है।

यहां पर हमें बहुत सारे गमले रखे हुए दिखाई--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

पाठ होता हुआ दिखाई दे रहा है।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

यहां पर हमें दो लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

आस पास हमें कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई नजर आ रही हैं।

बाहर हमें बहुत सारी लाइट्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर हमें कुछ गाड़ियां और बसे खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

आस पास हमें कुछ पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य हमें किसी ऑफिस का नजर आ रहा है।

यहां पर हमें एक टेबल रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं।

पीछे दीवार पर हमें बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं।